और यहाँ पर लाइट के बड़े से खंबे दिखाई दे रहे हैं दो बड़े बल्फ जल रहे हैं और आसमान में चाँद दिखाई दे रहा है आसमान पूरा नीला है।

यहाँ पे एक मोल है जिसमें एक लेडी है जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पेहनी हुई है और वो बैठी हुई है।

और उस पे लाल और ग्रे कलर हैं नीचे एक अ लोहे का गेट है जिस पे एक बैनर लगा हुआ है।

यहाँ पर एक मछली की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ रखी हैं पड़ी भी हैं छोटी है और ये --

बेटा है उसके पास काफी सारे बोक्स रखे हुए हैं --

और इसमें काफी सारा पानी भरा हुआ है नदी में सामने कुछ हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ताखाओं से बंधी हुई है नीचे मिट्टी है हरी घास दिखाई दे रही है पीछे मकान बना हुआ है जिसकी दीवार पे --

एक जाली है जाली में रसिया लगी हुई है सामने कुछ झूले भी लगे हुए हैं और कुछ मकान बने तो सफेद और --

यहा पर एक बुक शॉप दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक में बहुत सारी किताबें रखी हुई है साइड में एक सीडी भी रखी हुई है।

और जो जिम की मशीन है वो लाल और काले कलर की दिखाई दे रही है सामने कुछ पौधे लगे हुए हैं जिनकी हरी पत्तियां दिखाई दे रही है।

एक जेन्ट्स यहां पर बैठा हुआ है जिसने चश्मा लगाया है और उसके सर्क के सर के ऊपर बड़ा सा बल्ब जला हुआ है।

सामने बड़ा-सा कार्यालयी दिखाई दे रहा है जिसकी सीढ़ी पर लोहे की रेलिंग लगी हुई है।

यहा पर एक काले कलर की प्लेट रखी हुई है और प्लेट में चिकन लेग पीस रखा हुआ है।

सामने एक दुकान है और दुकान के पास एक अंकल खड़े हुए हैं जिन्होंने सर पे केप लगाई हुई है।

यहाँ पर एक रोड है और रोड पे कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं ओटो है और --

यहां पर एक बहुत ही सुंदर सा मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा हूं जिसका कलरफुल --

कलर किया गया है जैसे लाल गुलाबी पीला सफेद और साइड में थोड़े से छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं।

लाइनिंग वाली टी शर्ट पेहनी है ब्लॅक और नीली टी शर्ट पेहनी हुई है।

और यहाँ पर कुछ टेबल रखी हुई है सामने टेबल रखी है जहाँ पर एक बोटल है।

कुछ पौधे लगे हुए दिखाई दे रे हैं यहाँ लोहे की जाली के अंदर बड़े से पेड़ लगे हैं --

सामने कार खड़ी हुई है और जो कर है वह सफेद कलर की है पीले कलर का उसे पर नंबर प्लेट है और कर के सामने --

स्टेज की सीढ़ी पर बैगनी कलर का कपड़ा लगा हुआ है जिसके साइड में कुछ चप्पले रखी हुई है यहां पर सफेद गुलाबी --

के ऊपर कुछ छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं और ऊपर की साइड बड़े --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

कलरफुल सजाया गया जिसे सफेद फ्लावर बने हुए दिखाई देते हैं दीवार पर और सामने के साइड पे पानी भरा हुआ है।

यहाँ पर एक शॉप दिखाई दे रही है और शॉप की जो रॅक है उसमें काफी सारे सामान रखे हुए हैं जिसे सॉस की बोतल है।

कलर से डेकोरेट किया गया है फूलों की माला है एक अंकल खड़े हैं।

यहां पर लोहे की जाली लगी हुई है और लोहे की जाली के ऊपर भी कुछ बेले आ रही है पत्तियों की नीचे हरी घास लगी हुई है।

यहाँ पर नदी दिखाई दे रही है नदी का जो पानी है वो हरा दिखाई दे रहा है सामने --

बड़ी-सी पत्थर की चट्टान है और पीछे की साइड पे पेड़ लगे हुए हैं ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

और यहां पर बहुत सारे घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ों की जो पत्तियां उनका डार्क हरा कलर दिख रहा है।

यहाँ पे बहोत बड़ा-सा समुद्र बना है और समुद्र का जो पानी है वो बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है ऊपर --

आसमान भी नीला नजर आ रहा है और यहाँ पर बहोत सारी नाव खड़ी हुई हैं और साइड में किनारों पर पेड़ लगे हुए हैं।